इस चित्र में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ भी दिखाई दिख रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है यहाँ--

इस चित्र में बहुत सारे बच्चे डांस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ एक बड़ा स्टेज भी दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे--

दिख रही हैं यहां बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

उस कार को सुधारता हुआ दिख रहा है।

यहाँ बहुत सारे पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

एक बड़ा मैदान दिख रहा है यहाँ--

कुछ बाइक पी खड़ी हुई दिख रही है।

यहाँ बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।